और गणेश जी और कई सारे भगवानों की तस्वीर दिखाई दे रही है मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक रोड हैं रोड के इस साइड एक वाइट कलर की--